यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट का है।

जिसमें एक काफी लग्जरियस --

ब्लैक सोफा लगा हुआ है।

यह पिक्चर एक पार्क का है।

पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

इसमें एक छोटा रास्ता भी--

पार्क के नीचे घास उगी हुई है।

ऊपर कुछ लाइट्स भी--

जिसके अंदर काफी सारी दुकानें हैं।

काफी सारे लड़कों के कपड़े दिख रहे है।

जो काफी स्टाइलिश और खूबसूरत हैं।

जिसके अंदर काफी सारी बोड़ियां दिख रही है।

इस हॉस्पिटल की दीवार का कलर --

इसके अंदर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इसमें दो ऑटो भी है।

एक पिंक कलर की बिल्डिंग --

जिसके बाहर कुछ लोग भी नजर--

काफी बड़ा और शानदार है।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट का है।

जिसके अंदर काफी कंफर्टेबल टेबल्स --

लाइट्स भी लगी हुई है।

एक्सरसाइजिंग टूल्स दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में एक रेस्ट हाउस दिख रहा है।

और चेयर्स लगी हुई है।

इसकी दीवार का कलर व्हाइट है।

भी नजर आ रहा है।

नाम पता और इनके कामों के बारे में लिखा गया है पीछे एक काफी बड़ी बिल्डिंग भी है।

आगे कुछ पहाड़ भी दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में एक पार्क दिख रहा है।

और इसके चारों तरफ काफी सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

पिंक और ग्रीन कलर की है।

जिसके चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है।

यह पिक्चर भारतीय स्टेट बैंक के बिल्डिंग के बाहर का है।

जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का--

इसकी दीवार क्रीम कलर की है।

इस पिक्चर में एक काफी बड़ा घर दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक लेडीज क्लॉथ --

की दुकान दिख रही है।

जिसकी दीवार का कलर --

इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

और कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

जिसकी दीवार का कलर --

एक डांस क्लास दिख रहा है।

और इसकी दीवार येलो और ब्लैक कलर की है।

इसमें कुछ लाइट्स भी जल रही है।

और इसकी दीवार का कलर --

इसमें एक ए_सी दो पंखे --

टूटी हुई इमारत का है।

यह पिक्चर एक सब्जी मंडी का है।

और इसका कलर व्हाइट है।

इस पिक्चर में एक पार्क दिख रहा है।

इस पार्क में एक डाइनो भी है।

ये पिक्चर एक ग्रोसरी स्टोर की है।

और यह पार्क काफी शानदार है।

इसकी दीवार पे काफी अच्छी डिजाइन है।

जिसका कलर रेड और व्हाइट है।

इसके बाहर एक गार्डन भी है।

इसमें काफी सारी कॉफी बनाने की--

ब्लैक ग्रिल भी लगा हुआ है।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट का है।

व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

और इसमें काफी बड़े-बड़े मिरर्स --

ये पिक्चर एक रेस्टोरेंट का है।

जिसके अंदर मरकरी से डेकोरेशन की गई है।

और ये पिक्चर रात में ली गई है।

ये पिक्चर एक मॉल की है।

कम प्राइस पे मिल रहे हैं।

साथ ही इसमें--

लेडीज कपड़ों की दुकान का है।

जहां पर काफी तरह के--

नीचे की साइड वुडेन टाइस भी है।

ये पिक्चर एक सब्जियों की--

ये पिक्चर एक पेट्रोल पंप और एक बैक का है।

एच_डी_एफ_सी बैंक है।

दो पार्क दिख रहा है।